साइड में एक रोड गई हुई हैं फ्रंट में जो बोर्ड है वो लाल रंग का है जिसमें सफ़ेद रंग से अक्षरों से लिखा हुआ है।

यह एक नदी की तस्वीर है इस में पीछे पहाड़ नज़र आ रहा है पहाड़ के निचे काफी घने पेड़ लगे हुए है।

ये एक म्यूजियम है जिसमें एक पुराने ज़माने की कोई यंत्र रखा हुआ है उसके बारे में नीचे लिखा हुआ है।

ये एक छोटा सा कमरा है जो सफ़ेद रंग से पोता गया है और जो मशीन है वो लोहे की है काले रंग से है के साइड में एक डब्बा रखा हुआ हैं।

ये मंदिर के ऊपर पीले रंग की गुमद बनी हुई है।

यह तस्वीर एक तालाब की है इसमें पीछे तालाब नजर आ रहा है पीछे ब्रिज दिख रहा है।

इसके ऊपर आसमान नजर आ रहा है तालाब के किनारे में मिट्टी दिख रही है।

ऊपर आसमान नज़र आ रहा है नीचे चट्टाने नज़र आ रही है।

यह तस्वीर में एक ब्रिज नजर आ रहा है नीचे पानी दिख रहा है ब्रिज में रेलवे ट्रैक है।

यह एक ब्रिज दिख रहा है ब्रिज के ऊपर रोड दिख रही हैं ।

आसपास पेड़ नज़र आ रहे है।